यहाँ पे एक पक्का रोड है रोड के--

लगा है वो यलो कलर का है सामने में एक आदमी पैदल जा रहा है।

सब बोट रैक में भी रखा है नीचे में भी सजा के--

अ कुछ-कुछ हैंगर में भी सार्ट वगैरह सजा के रखा है।

सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ रास्ता है यहां पे एक चार चका गाड़ी वाइट कलर का--

वहां पे नीचे में कोई बिक रहा है वो खरीद रहा है।

ब्लैक कलर का पेंट पहन के उधर उस सामने जो बिल्डिंग है बिल्डिंग है।

कुछ औरत लोग आदमी लोग घुस रहा है।

अह नीचे जो फ्लोर है बंधा हुआ वो फ्लोर में बहुत सारे लड़की लोग--

वो लोग कोई पढ़ रहे हैं कोई लिख रहा है।

ऊपर से नीचे तक लटका के रखा है सुंदर सा एक

गेट सामने यहाँ पे नीचे गवर्नमेंट गाड़ी खड़ी है बोलेरो गाड़ी जो गवर्नमेंट ऑफिसर का गाड़ी है।

का टावल भी लगा हुआ है जो बस --

सैटरडे है बंद है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ए_टी_एम का शटर बंद लग रहा है।

एक रास्ते के पास बिल्डिंग है बिल्डिंग में नीचे--

ये शटर खुला है और दुकान के ऊपर में से कुछ स्नैक्स का--

ये कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां पे बिल्डिंग का--

यहाँ पे साइड में एक प्लेटफार्म बांध रहा है वहाँ पे भी ढलाई होगा लेबर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पास में भी एक बिल्डिंग ऊपर तक उठ गया है।

ये शोरूम है शुखा का शोरूम ए यहां पे दिखाई दे रहा है जो रेड --

ये कोई बैंक का होडिंग लगा है। केनरा बैंक का होडिंग है। नीला कलर का होडिंग है।

दो बिल्डिंग एक शॉप है जिसका नाम है आर_के मेगा स्टो--

यह एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यह कोई स्कूल या कॉलेज का बिल्डिंग है जहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है विवेकानंद लाइब्रेरी ।

वो भी टी शर्ट पहन के खड़ा ही है यहाँ पास में बहुत सारे जिम का मशीन दिखाई दे रहा है।

एक नदी है नदी में एक बड़ा सा नाव है नाव के नीचे एक आदमी एक औरत एक लड़का--

हैं उम लड़का बैठा है और आदमी औरत खड़ा है।

इलेक्ट्रानिक दुकानें वीवो का होडिंग लगा हुआ है आई_डी का आईडिया का होडिंग लगाया हुआ है वहां--

ब्रिज दिखाई दे रहा है जो टाइप का वहां हो ब्रिज देकर बना हुआ है इसमें से लोग पैदल जाता है जो जगह गाड़ी मोटर बाइक जाता है।